अंदर कुछ कैबिन बने हुए हैं।

लाइब्रेरी में बड़ी-बड़ी टेबल लगी हुई हैं।

दूर एक घर बना हुआ है।

पार्किंग पर कथई और सफेद पत्थर लगे हुए हैं ।

एक स्टेज बना हुआ है ।

यहां पर एक कुर्सी दिख रही है।

बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं ।

पीछे काले रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं ।

एक बड़ी सी लाइट लगी हुई है।

चित्र एक बिल्डिंग का है।

चित्र एक स्विमिंग पूल का है।

चित्र एक दरवाजे का है।

गार्डन में जालियां दिख रही हैं ।

चित्र एक पूजा का है।

टेबल पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं दोनों पढ़ाई कर रही हैं।

सेंदरी में लड़की खड़ी हुई है।

सिल्वर कलर की जाली दिख रही है।

चित्र में एक शोरूम दिख रहा है शोरूम में दो लोग खड़े हुए हैं।

ऊपर बड़े-बड़े ए_सी रखे हुए हैं।

दो बड़ी-बड़ी कुर्सियां रखी हुई हैं।

जो इमारत को देखने आए हैं।

एक लड़की पीले कलर के और एक लड़की गुलाबी कलर के कपड़े पहने हुए है।

गार्डन दिख रहा है यहां पे एक जगह थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है।